टोकरी में कागज अखबार फैला हुआ है। टोकरी के बराबर में एक लाल रंग के टोकरी भी रखी हुई है।

उसने एक तक्त को भी बिछाया हुआ है। यहाँ दो व्यक्ति एक मेज़ पर बैठे हुए हैं।

यहाँ बहोत बड़ी-बड़ी मशीने दिखाई गयी हैं। मशीने सभी लोहे की बनी हुई हैं। वे --

बो रखे हुए हाथ में लिए दिखाई दिया है।

यहाँ एक जिम दिखाया गया है। जहाँ लोग कसरत करने आते है। यहाँ बहोत सारी कसरत करने की मशीने रखी हुई हैं।

ऊपर एक बक्सा लगा हुआ है। वे दीवारों पर हरी --

व कुछ व्यक्तियों ने अपने बैगों को कुर्सी पर टांगा हुआ हैं।

यहाँ एक धार्मिक स्थल दिखाई देता है जो कि चारों तरफ से सफ़ेद रंग का रंगा हुआ है।

म्म पत्थर से बनी हुई सड़क दिखाई गयी है। उसी के दोनों तरफ छोटी-छोटी घास उगी हुई है।

यहाँ बहोत सारे ईटो के ढेर लगे हैं। यहाँ बहोत सारे टिन --